यह जिम में यूज करने वाली एक मशीन है जो की इंसान को अगर ज्यादा फेट हो जाता है या उसके पैर में मसल्स ज्यादा हो जाते है तो उसमें ये --

सहायता प्रदान करती है और --

इसपे चलने या दौड़ने के लिए एक्सरसाइज के रूप में यह जिम में इस्तेमाल किया जाता है।

यहाँ आपको एक बड़ा सा फील्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बहुत से लोग एकत्रित होए हैं।

और सभी दो घु घुटो के बीच ये फूटबॉल का मैच हो रहा है।

यात्री लोग सभी विजिटर्स लोग यहाँ विजिट --

बहुत ही अच्छे तरीको से सजाया गया है वाइट और ग्रीन गुबारों और मेरीगोल्ड फूलो से इसे बहुत ही इसको बहुत ही सुंदर तरीको से डेकोरेट किया गया है।

अपना सर ऊपर किए हुए तालाब में बहुत ही अच्छे ये तैर रहे है तालाब के पानी से कुछ उफान मार रही है।

लाइट की व्यवस्था और डेकोरेशन बहुत ही अच्छे प्रकार से की गई है।

चेयर की व्यवस्था ऑरेंज रंग बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है।